तीन मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप के खंभे--

यहाँ पर लाइट के कई खम्बे भी दिखाई दे रहे है और पेट्रोल पंप पर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है मोटर साइकिल से और यहाँ पर पेट्रोल पंप के दायें-बाये बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर कार भी नज़र आ रही हैं और कुछ व्यक्ति भी नज़र आ रहे हैं यहाँ नीले कलर का एक डस्टबिन रखा हुआ हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं छोटे-छोटे और यहाँ--

एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है पेट्रोल पम्प के पास कुछ मोटर साइकिल बसे भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ कुछ व्यक्ति और महिलायें भी दिखाई दे रही है पुरुष भी एक पुरुष मोटर साइकिल पे बैठा हुआ है और उसके पीछे के मोटर साइकिल कि लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

और यहाँ पर उसके सामने कई पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं दाएं बाएं और पीछे भी पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

गमले दिखाई दे रहे हैं जिनका ऑरेंज कलर के है और उनमें पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं और एक कार भी दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है स्कूटी दिखाई दे रही है फिर ये वोटर--

और दो व्यक्ति भी नज़र आ रहे है खम्बों पर लाइटे जल रही है साइड में दिवालो के पास कुछ पेड़ पोधे दिखाई--